बड़ा कोई प्रोग्राम हो रहा है जहाँ ये चर्च है।

बैग है ढोलक है पियानो है हेलमेट है और ये प्लेट्स है ।

और काटन में कुछ यहाँ पे मतलब आपको म्यूजिक के सारे सामान मिल जाएंगे।

और कैमरास भी लगे हुए हैं और ये --

इससे सोना बनाया जाएगा।

और यहां पे आप जैसा चाहोगे वैसे एए आप स्टाइल में कटवा सकते हो बाल।